इस चित्र में हम देख सकते हैं कि तीन बचेया ना ती हुई दिखाई दे रहीं हैं।

इस चित्र में हम देख सकते हैं कि रंगोली से बनाई हुई दो मूर्ति दिखाई दे रही हे --

और बैनर्स भी रखे हुए हैं सब --

इस चित्र में हम देख सकते है कि मोनालिटिक - रेलिंग का एक बोर्ड लगाया हुआ है और बोहोत से फत्तरे दिखाई दे रहे है पुराने जमाने के --

बहोत सुंदर आसमान हो रखा है और पेड़ भी थोड़े दिखाई दे रहे --

पीछे पोस्टर्स दिखाई दे रहे। बैनर भी एक लगा हुआ है और लाइट भी चमक रही है और एक गाड़ी भी दिखाई दे रहा है।

बहुत सारे अध्यापक खड़े हुए दिखाई दे --

इस चित्र में हम देख सकते हैं कि काला आसमान दिखाई दे रहा है। बहुत से लाइटे चमकती हुई दिखाई दे रहे है।

और बोहोत से रंग बिरंगे फूल भी ऱगे हुए है और औ चार अ औ चार लोग खड़े हुए --

लिखा हुआ है और एक पार्किंग का बोर्ड भी लगाया हुआ है एक बड़ी सी खिड़की भी दिख रही है और बहोत से लाइट चमक रहे हैं।

शेर का मूर्ति भी दिखाई दे रहा है और बोहोत से पे अ पौधे भी दिख् --